सभी लोग ट्रेन -म् का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बोहोत सारे लोग आये हुए हैं। यह जगज पे काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे ट्रेन आके इसी स्टॉप पे रूकती है।

यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रही है। स्टेज पे एक लड़की डांस कर रही है। बहोत ही अच्छी सजावट की गयी है। लाइट लगाये गये हैं और बहुत सारे आदमी देखने के लिए भी आये हैं। अम्म यहाँ पे डांस कर रही --

यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ लगी रहती हैं। यहाँ पे बहोत ही अच्छी तरह से फोटो निकालते है। यहाँ पे एक आदमी और एक औरत की फोटो लगी हुई है।